जिस में हम देख रहे हैं एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

ये दृश्य किसी कमरे के अंदर के भाग का दिखाई दे रहा है इसमें एक आदमी खड़ा है और एक बैठा हुआ--

दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है महिलाओं को मिला सम्मान।

के पीछे बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और एक दो वृक्ष आगे की ओर भी हैं।

पानी के किनारो पर वृक्षों की प्रतिबिंब नजर आ रही है और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी बड़े स्विमिंग पूल का लग रहा है जिसमें बहुत सारे लोग स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं।

नीचे ढलान है और कई जगह खेतों में क्यारियां बनी हुई है।

ये दृश्य किसी कमरे के अंदर के हिस्से का है।

कुछ लोग अंदर बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

उपर बिजली के तार लटक रहे हैं और पीछे बड़ा सा लोहे का खंबा दिखाई दे रहा है।

रास्ते के दोनों तरफ सुंदर पौधे लगे हुए हैं और हरी हरी घास भी दिखाई दे रही--

मैदान के बीच में लकड़ियों को लगा कर रखा गया है और इसके आगे नदी दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हम देख रहे हैं कुछ लड़के अपने पैरों पर स्केटिंग बांधे हुए हैं।

दृश्य में हम देख रहे है एक रास्ता दिखाई दे रहा है इस--

इसके एक तरफ कई दुकानें बंद दरवाजे नजर आ रहे हैं और एक तरफ कई छोटे बड़े वृक्ष और पौधे दिखाई दे रहे है।

उसके पीछे एक पानी का टंकी दिख रहा है और पीछे हरे रंग का गलीचा बिछा हुआ है।

इनमें बहुत सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहे है और इनके आगे कुर्सियां रखी हुई है।

दृश्य हम देख रहे हैं झरने का पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है और इसकी अगल बगल बहुत सारी हरे हरे छोटे बड़े वृक्ष पौधे नजर आ रहे हैं।

ये छोटे बड़े कई आकर के पत्थर भी है और बहुत सारे लोग भी पानी में और ऊपर खड़े हुए हैं।

दृश्य में हम देख रहे हैं दो नए चमकदार ट्रैक्टर खड़े हुए हैं।

दृश्य में हम देख रहे है कि एक दीवार पर ऊपरी भाग में केंट एंड एक्वागार्ड ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर आर_आर एंटरप्राइजेज लिखा हुआ है।

मूर्ति एक बड़े से मेज पर रखा गया है और पीछे दरवाजा दिखाई दे रहा है।

अगल बगल खिड़कियां दिखा रही है और सामने ऊंची नीची मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है।

दो टेंपो आगे एक बीच में और दो पीछे हैं।

इसके नीचे एक रस्सी है और एक कुर्सी बाहर रखी गई है।

कुछ हरे भरे पौधे और वृक्ष दिख रहे हैं और बिजली के खंभे भी है।